यह दृश्य हमें एक स्कूल का दिखाई दे रहा है।

यह दृश्य एक जागरण का है।

बाहर काउंटर पर बहोत सारे झूमर लगे हुए नजर आ रहे हैं।

यह दृश्य हमे एक टोल टैक्स का नज़र आ रहा है।

दृश्य में हमें एक टेबल और चेयर रखी हुई नजर आ रही है।

यह दृश्य हमें एक दुकान का नज़र आ रहा है।

ऑफिस में गुब्बारे लगे हुए हैं।

यहां पर छोटे छोटे टेबल्स लगे हुए हैं जिसके आसपास--

यहां पर हमें तरह तरह के पक्षी पिंजरे में बंद पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

यह दृश्य हमें एक मैरिज पैलेस का नजर आ रहा है।

यह दृश्य हमें एक नर्सरी का दिखाई दे रहा है।

इस दृश्य में हमें बहोत सारी कार्स खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

ऊपर आसमान में बादल छाए हुए दिखाई दे रहें हैं।

इस दृश्य में हमें बहोत सारा पूजा का समान कान्हा जी की ड्रेसिस --

और टलियां और पीने के लिए छोटे छोटे बर्तन रखे हुए दिखाई दे रहें हैं।

यहां पर एक मेज के आसपास बहोत सारी कुर्सियां रखी हुईं दिखाई दे रही हैं।

आसपास बहुत सारे पेड़ लगे हुएं दिखाई दे रहें हैं।

इस तस्वीर में हमें बहुत सारे अलग अलग--

दृश्य हमें किसी शूटिंग क्लास का नज़र आ रहा है।

यहां पर हर बच्चे हमें गन की सहायता से शूटिंग की प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

पास मे एक टी स्टॉल लगी हुई नज़र आ रही है।